सिल्क साड़ी मे बहुत अच्छे अच्छे फुल छपा हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत सारे टाइल्स लगे हुए दिखाई दे रहे है।